बहोत अच्छा ऑफिस लग रहा है इसका लग रहा है अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है।

ये एक बहोत बड़ा सा एक अं बहोत बड़ा सा हॉल है जिस हॉल के अंदर कोई एग्जिबिशंस या कोई अ--

ये एक बहोत बड़ा सा एक हॉल लग रहा है आई थिंक ए स्टेज हाल लग रहा है जिसके अंदर लोग--

और आजकल सारा मतलब आनलाइन ही हो गया है तो बहुत लोगों को इस हॉल की जरूरत पड़ती होंगी और इसमें चेयर्स रखी हुई हैं और कम्प्यूटर लैब बहुत अच्छा बना हुआ है।

पीकर बहोत बड़े ट्री है ट्री डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं ट्री का कलर ग्रीन कलर का है और ये बहोत अच्छा लुक आ रहा है ट्री की वजह से इस पूरी बिल्डिंग का।

फ्लोर है फ्लोर में कुछ लिखा हुआ है नो नो स्पोकिंग एंड एक साइड बैनर लगा हुआ है।

अपन पर अपने हिसाब से अपने अपने साइड के हिसाब से कपड़े परचेज करती है और इसकी फॉर सीलिंग बहुत अच्छी लग रही है फॉर सीलिंग पे बहोत अच्छी लाइटिंग हो रही है।